इस तस्वीर पर मुझे एक सोफा नजर आ रह है यह सोफा लकड़ी का है।

तस्वीर पर मुझे एक बड़ा सा दुकान नजर आ रहा है जिधर पे फूड ट्रैक लिखा हुआ है बड़ा सा।

बहुत सारे लाइट्स भी नजर आ रहे हैं।

और डेकोरेशन के लिए छोटा से पॉट में पौधा भी लगाया रखा है।

इस तस्वीर को देख कर मुझे लग रहा है कि यहा कोई डांस कॉम्पटीशन हुआ था।

और इसके ऊपर पर ब्रिजस्टोन सलेक्ट भी लिखा हुआ है इस गैरेज के ऊपर पर--

साइड में दो साइन बोर्ड है नो पार्किंग का।

इस मैदान के चारों तरफ हरियाली है।

इस मैदान पर बहुत सुंदर से सफेद चिन्ह बनाए हुए हैं।

बहोत सारे साउंड सिस्टम रखे हुए हैं।

इस तस्वीर को देखकर मुझे लगा रहा है कि ये कोई बड़ा सा पार्क है।

इस तस्वीर को देख कर लग रहा है कि यहां कंट्रशन चल रहा है।

और मुझे एक बड़ा सा गेट नजर आ रहा है जो कि नील कलर का है।

सब इंसान स्केटिंग कर रहे है।

और एक एलोवेरा का पौधा भी नजर आ रहा है।

और घर के अंदर बहुत सारे इंसान भी नजर आ रहे हैं।

तो इस घर का कलर ब्लू व्हाइट और छत का कलर रेड है और इस घर से एक थोड़ा सा धुआ भी निकल रहा है।

इस तस्वीर मे मुझे एक बहुत बड़ा झरना भी नजर आ रहा है।

और मुझे बहुत बड़ा बड़ा पत्थर भी नजर आ रहा है।

और ये झरना कोई पहाड़ से आ रहा।

भगवान ने बांसुरी भी पड़ी हुई है।

बहुत सारे मोर के पंख भी है।

इस रेस्टोरेंट पर बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।